बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और इधर ये पेड़ वेर भी लगा हुआ है जिसमे फुल बुल भी है और इधर तकता वक्ता फैका हुआ है जो की बहुत ही--

और यहां पे सांप वाप भी है और ये एक जानवर है । यहां पर ये बैनर बाता रहा है की सतर्क इनसे सावधान रहे यहां पे मिल सकता है यह ।

यहाँ पर बेनर लगा हुआ है रेंज कैंप ऑफिस यह कुछ चीज का ऑफिस है और यहा पर पेड़ बेड भी लगा हुआ है बहुत ही खुबसुरत है इधर रोड बोर्ड भी है|

और बहुत ही अच्छा है बहुत ही सुंदर है यह ग्लैमर अ ग्लमौर बाइक है जोकि ये बाइक में भी चलता हु बहुत ही अच्छा लगता है ये बाइक चलाने में पुराना मॉडल है।